आलू स्किन के लिए भी अच्छा रहता है आलू काफी मोटा कर देता है।

जैसे कि नई-नई कहानियों के साथ यहाँ पर बहुत सारी तरीके बुक है और बहुत नई-नई कहानियों के साथ --

यह बच्चे है जो कि किसी पेपर पर ड्रॉइंग बना रहे हैं या किसी चीज को बना रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो वेस्ट मटेरियल से समान बना रहे हैं और टीचर खड़ी हुई हैं और बच्चे अपने काम मे लगे हुए हैं।

भगवान का मंदिर है जो की काफी बड़ा है यहां पर भगवान से हर मनोकामना पूर्ति होती है यहां तो हर व्यक्ति आते हैं।